यहाँ पे एक स्टेज बनी हुई है। स्टेज पे बहोत सारे लाइट्स लगे हुए है।

ग्रीन कलर की है। कुछ व्हाइट कलर की बैलून है और यहां पे एक सोफ़ा रखा हुआ है रेड कलर का।

यहाँ पे दो स्माइली टेंटू गले हुए हैं।

यहाँ पे एक अंकल का पैर दिख रहा है। उनका जूता दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक दुकान है। यहाँ पे बहोत सारे पेन रखे हुए हैं पेंसिल रखी हुईं हैं बुक्स रखी हुईं हैं।

और टेबल पे एक पेपर रख हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

पैंट किया गया है बिल्डिंग के बाहर एक मूर्ती बनी हुई है।

यहाँ पे (पर) पत्तिया ही पत्तिया दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे अ दुकान में का जो मेन गेट है वहाँ पे गजरा मालाएं लगी हुई है और कुछ समान टंगा हुआ है।

यहाँ पे देवी जी की मूर्ति रखी हुई है। सरस्वती जी है शंकर जी है लक्ष्मी जी है नरमदा जी है।

कुछ छोटे पेड़ है कुछ बड़े पेड़ है और यहाँ पे नदी टाइप का पानी भरा हुआ है।

यहाँ पे एक होटल बनी हुई है और यहाँ पे बहोत सारी बिल्डिंग्स भी बनी हुई है।

यहाँ पे सर्कल बने हुए है। रेड सर्कल है येलो सर्कल है ग्रीन सर्कल है। उनमें से भी पानी आ रहा है।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा ग्राउन्ड है। ग्राउन्ड में बीच में --

यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। शिव जी का मंदिर है। ऊपर गुंबड बनी है।

यहाँ पे एक रिसॉर्ट है। यहां पे ऊपर एक बोर्ड पे कान्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है मोबाईल नंबर ।

यहाँ पे एक अंकल खड़े है जो पूरे पैक है। यहाँ पे एक लड़की है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जिस पे सफेद कलर महरूँ कलर पेंट किया गया है।

यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए है। कुछ बच्चे बैठे हुए है। एक रेड कलर का टब रखा है उसमें रखी मछलियां --

और यहाँ पे बहोत सारे क्रीम रखी हुई है। पाउडर रखे है और भी बहोत सारा सामान रखा है। फेशियल पैक रखा हुआ है।